और यहां पे लोग आकर अपना नाश्ता भोजन कर सकते हैं ।

भाई यह व्यक्ति क्या देख क्या रहा है।

ये एक मॉल है मिनी मार्केट जहां दिख रहा है यहां पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं जहां से व्यक्ति कोई भी सामान पर्चेस कर सकते है अपने लिए बहुत सारे सामान रखे हुए हैं मॉल में ।

ये एक बाइक स्टैंड है। और काफी मात्रा में यहां बाइक लगी हुई है। काफी किस्म की बाइक यहां बाइक है यहां पे। और मात्र बीस रुपये में आपको यहां पे टिकट मिल जाएगा आप पार्क कर सकते हैं। आपकी गाड़ियां सुरक्षित रहेंगी यहां पे विदाउट टेंशन के।

ये एक नदी है नदी के रेत में बहुत सारे व्यक्ति आए हुए हैं बिच जैसा नजारा है बहुत सारे व्यक्ति आये हुए है पिकनिक में चारो तरफ घूम रहे हैं साफ सफाई भी चल रही है और यहाँ पर एन्जॉय कर रहे हैं बहुत सारा फैमिली आये हुए हैं पिकनिक में ।

ये नदी है बहुत ही बड़ा नदी है हमारे यहां सिकटिया का नदी है ऊपर से फूल गुजरते गुजरते हुए दिखाया गया है ।